एक फंक्शन का आयोजन किया गया है यहां एक डंडे में ऊपर की ओर अग्नि प्रज्वलित की गई है।

यह एक टेंपल है जिसके अंदर बहुत सारी भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं जहाँ माता रानी --

यह एक यूनिक गया लिखा हुआ है तथा आस-पास बाउंड्री बनाई गई है अंदर एक पार्क है पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

एक रिवर है जिसके बगल में एक ईंटों का वर्क चल रहा है तथा ब्रिज बनाए जा रहा है।